चित्र में एक हरा भरा पेड़ दिखाई पड़ रहा--

यहाँ धूप निकला हुआ है साइड में बहुत बांस लगे हुए हैं।

बास में लाल कपड़ा लगा हुआ है पौधा है बड़े बड़े पेड़ भी है।

एक छोटी सी सीढ़ी बनी हुई है उस--

ग्रे कलर की तो ब्लैक कलर के बिछे हुए हैं।

होटल के बाहर छोटे छोटे गमले और उसमें पौधे भी हैं।

ब्राउन और व्हाइट फर्श है।

तथा विनायक हॉस्पिटल लिखा हुआ है बिल्डिंग का कलर ग्रे तथा बॉर्डर ब्लू है।

बहुत सारे बाइक और स्कूटी भी लगे हुए हैं।

बहुत सारे हरे भरे पेड़ भी है एक बहुत लंबी सड़क भी है।

यह देवघर के न्यासा मॉल का चित्र है।

रेस्टोरेंट का चित्र है।

और ए_सी लिखा हुआ है इसमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर ए_सी नॉन ए_सी रूम भी लिखा हुआ है।

इस चित्र में एक फूल दिखाई पड़ रहा है।

जोकि डार्क ग्रीन कलर के हैं।

एलवेस्टर टाइप लगा हुआ है।

कुछ बच्चों ने स्वेटर पहने हैं कुछ ने येलो कलर की टी शर्ट तथा सभी ने व्हाइट कलर की पैंट पहने हैं।

पिलर के उधर बहोत हरे भरे घास के मैदान हैं।

आसमान उथला तथा नीला दिखाई पड़ रहा बहोत सारी मिट्टी कोड़ी हुई है।

आसमान उजला दिखाई पड़ रहा है।

लाल लड़की सभी ने पट्टी पहनी है हरे कलर की टोपी पहने है।

उसपे एक प्रिंटर रखा हुआ है टेबल पर एक बॉटल भी रखा हुआ है।

इनका कलर ऑरेंज कलर का है सामने एक चेयर भी रखे हुए है जो की ब्लैक कलर के है।

सामने एक लाल कलर की बच्चे की साइकल रखी हुई है।

बुड़े के हाथ में एक पेपर है और एक--

प्लास्टिक है जिसमें मेमोरी हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

इस चित्र में एक दुकान दिखाया गया है।

हैंगर में बहुत सारी साड़ियां रखी हुई है कुछ कपड़े रखे हुए--

बहुत सारे बास भी लगे हुए हैं एक बोर्ड जिसमें मेवा लिखा हुआ है।

और भी कुछ लिखा हुआ है ओ नही दिख रहा है।

बाउंड्री से घेरा गया है बाउंड्री में येलो कलर के छड़ भी लगे हुए हैं।

दो तीन छोटे छोटे ब्लू कलर की चेयर भी लगी हुए हैं ।

यह किसी रेस्टोरेंट का चित्र लग रहा है।

बिल्डिंग व्हाइट कलर का तथा उसका पिलर भी व्हाइट कलर का है सामने ग्रीन तथा ब्लैक कलर की गेट लगी हुई है।

दूर मे एक बच्ची भी दिखाई पड रही है और दो तीन लडकियां भी दिखाई पड रही है।

झूला लाल तथा एक झूला व्हाइट कलर का है।

यह किसी दुकान का चित्र है।